और बाइक पे दो आदमी बैठे हुए हैं। एक खिड़की भी है।

डी_जे का फ्लोर है इसमें एक छह दो डी_जे लगा--

एक छत का घाट है घाट के सामने बहुत अच्छे तरह से सजाया गया है।

एक बड़े सा गेस्ट टाऊन है जो कि टोयोटो टेंपो से खरे हैं।